गुड्डे का कलर क्रीम कलर का है ऊपर बैग दिख रहा है बैग का कलर --

टेबल दिख रही है क्रीम कलर की बाल्टी दिख रही है गुलाबी कलर की यहाँ पे एक अंकल खड़े हुए है।

यहाँ पे नेस्टोजन भी लिख रखा है।

पिलर दिख री है इसका कलर व्हाइट ग्रीन पिंक दिख रा हैं।

और यहाँ पे कुर्सी दिख रही है टेबल दिख रही है टेबल का कलर सफ़ेद है कुर्सी का कलर चॉकलेटी है।

ये है बुधाई मूर्ति लग रही है निचे फर्श चॉकलेटी लग रहा है।

नीचे हरी - हरी घास दिख रही है लाल घास दिख रही है संतरी काली ब्राउन ऊपर बादल है।

इस्पे सफ़ेद कलर का बोर्ड है उसपे टाटा स्काई लिखा है टाटा ब्लू --

गद्दा दिख रहा है पीछे खिड़की दिख रही है शीशे वाली--